और उन्होंने नये सुन हलो कलर्ड वाले बैलून का यूज किया है। कुछ झूमर कागज के लगे हुए है और टेंट बहुत अच्छी लगी है। माताजी की मूर्ति को सुन्दर --

और जो यहा पर पेड़ दिखाई पर रहे है| इस पेड़ पे बधे हुए है कुछ आदमी भी खडे है और गन्ने-गन्ने से ओढनी उढ़ाया हुआ।

और हम एक लड़का स्पीच दे रहा है एक लड़का कुछ गाना भी गा रहा है ऊपर पंखा लगा हुआ है लाइट भी जल रहीं है और कुछ बैलून वैलून बहुत सारे लगे हुए है। और --

मुस्लिम और पीछे साइकिल वाईकिल बहुत सारी खड़ी हुई है आगे कूड़ा-करकट भी पड़ा हुआ है और तरजुआ-अरजुआ भी बहुत सारा है उधर माकन-वकान व दुकाने-वुकाने नजर आ रही है। क़स्बा --

यह गिरिजाघर लग रहा है | इस गिरजाघर में आरती हो रही है | कुछ और बहोत सारे लोग औरतें भी है जेंट्स भी हैं और --

इस जिम में बहोत ज्यादा बड़े- बड़े शीशे भी लगे हुए हैं। नीचे जो टाइल हैं वो अच्छे रंग- बिरंग कलर - कलर वाले हल्के ब्लू पिंक कलर के टाइल भी हैं और कुछ लोग सेल्फी ख --

ये कही का खंडर लग रहा है। इस खंडर की जो दिवाले हैं टूटी-फूटी हैं और जो ऊपर की तरह है वो भी टूटा फूटा हिस्सा लग रहा है। इसमें दो दो दो आदमी खड़े हुए है। वो इस खंडर को देख रहे हैं।

इस खंडर के पीछे एक पेड़ भी सूखा फुका लग रहा है और उसके नीचे बहुत सारे टूटे फूटे ए खुरे भी पड़े हुए हैं और कूड़ा कर्कट बहुत सारा पड़ा --